यहां जमीन पर एक काले रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

यह चित्र किसी सड़क का है जहां सामने की ओर एक दो पहियों वाली वाहन खड़ी है।

यहां कुछ फूल भी दिख रहे है।

यहां एक कांच की मदद से बना दरवाजा भी लगा हुआ है।

अंदर की तरफ कई सारी सामने नजर आ रही है।

यहां पर एक बड़ी सी घड़ी भी नजर आ रही है।

यहां कुछ फ्रिज भी नजर आ रहे हैं ।

यह चित्र किसी नदी का नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

सामने की ओर कुछ हरे रंग की नेट लगी हुई दिख रही है।

दीवाल में एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मछली पार्क लिखा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य किसी अस्पताल का है।

इस इमारत के ऊपर एक लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है।

यहां एक ऑटो भी नजर आ रहा है।

यहां एक मोटा और लंबा पेड़ भी दिख रहा है।

सामने की ओर कई सारी हरी भरी पौधे तथा अलग अलग तरह की फूले रखी हुई दिख रही है।

सामने की और एक बेहतरीन शानदार सोफा लगा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य किसी स्थान का नजर आ रहा है।

यहां एक लाल और सफेद रंग का टेबल भी लगा हुआ है।

यह चित्र किसी स्कूल का नजर आ रहा है जहां सामने की ओर दो गमलों में लंबे लंबे पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।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

यह चित्र किसी कमरे का नजर आ रहा है।

नीचे की तरफ नीले और लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

सामने की ओर दीवाल में एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डेल लिखा हुआ है।

यह चित्र किसी कॉफी के दुकान का है।